जिसका एक दुकान का शटर बंद है।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट --

सामने में एक लूना दिखाई पड रहा है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है।

हेलोजन दिखाई पड़ रहे--

और उसपे इंग्लिश में लाल रंग से लिपिड सॉल्यूशन लिखा है।

जोकि आधा उखड़ा हुआ है।

पीले रंग से ले आकांक्षा लेडीज ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है।

साइड वाला दुकान बन्द है।

एक साइड एक आदमी खड़ा है।

दृश्य में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई पड़ रहा--

आसपास बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई पड़ रहा है जो की हरा भरा है।

टेबल का कलर व्हाइट दिखाई पड़ रहा है।

दो सफेद रंग का शर्ट और उसने गले में कुछ पहना हुआ जो की लाल कलर के धागे में है।

इस दृश्य में दो दुकान दिखाई पड़--

यहां पे स्लाइडर बनाया हुआ है।

पाइप दिखाई पड़ रहे हैं और उसे सीढ़ियां जुड़ी हुई है।

लकड़ी का कलर चेयर का कलर भूरा दिखाई पड़ रहा--

और बगल में एक लोटो चोको पाई रखा हुआ जो कि लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है।

इसमें सफेद रंग का बादल भी दिखाई पड़ रहा है।

कई कई बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई पर जो की हरे रंग के हैं।

ऊपर में सीढ़ी दिखाई पड़ रही है और अंधेरा--

यह दृश्य एक ऑफिस के केबिन का है।

उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावरस लगाए हुए--

तार जैसा घुमाया हुआ है।

बर्तन रखने वाला जाली डग वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं।

ऊपर में एक पोस्टर लगाया हुआ है जिसके पीले और लाल रंग का है।

ऊपर मैं बहुत सारा तार दिखाई पड़ रहा है जो कि काले रंग का है।

पोल पे एक और बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे सिस्कॉन लिखा हुआ है।

इस दृश्य में दो बच्चे दिखाई पड़ रहे।

टोपी लगाए हुआ है जोकि काले रंग का है।

ऊपर में बहोत सारी झाड़ी दिखाई पड़ रही है।

और बीच में एक रास्ता बनाया हुआ है।

इस दृश्य में नृत्य करती हुई लड़कियां दिखाई पड़--

गुलाब का फूल और मोगरे का फूल भी लगाया हुआ--

इस दृश्य मे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहनी हुई है।

इस दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

टब का कलर लाल दिखाई पड़ रहा है।

अहा स्लाइडर वाले बनाया हुआ है।

सामने में एक आदमी खड़ा है।